हम घनश्याम थान आये हुए हैं यहाँ पर बहोत भीड़ है यहाँ पर बहोत श्रद्धालुओं का भीड़ हैं दूर-दूर से पूजा करने के लिए आते हैं और यहाँ भव्य एक मंदिर है यहाँ पंडित जी भी उपस्थित --

तरफ आए हुए हैं और यहाँ का नजारा बहोत मस्त लग रहा है देखने में और यहाँ बहोत सारी पक्षियाँ पेड़-पौधे हैं और यहाँ पर पानी भी चल रहा है यहाँ बहोत सारे बच्चे खेल रहे हैं इधर उधर घूम रहे हैं बहुत मस्त --

राजगीर आए हुए है राजगीर का नजारा बहोत मस्त लग रहा है राजगीर भी देखने भी मस्त लग रहा है बहोत सारे लोग यहाँ पर है विदेशी लोग भी आते हैं और यहाँ पर पक्षी भी है और यहाँ पर --

ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए और यहाँ ब्रेकफ़ास्ट की सुविधा बोहोत मस्त है और यहाँ ए_सी कूलर भी लगा हुआ है और बोहोत दूर-दूर से लोग यहाँ आते ना --

अभी हर रोड पे घूम रहे है और यहाँ पर गाड़ियां चल रही है और देखने में एकदम अच्छी लग रही है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है और यहाँ बहुत सारे दूकान है और यहाँ का नज़ारा अच्छी लग रही है और जितना हो सके शेयर लाइक करे --

कोई बिहार के बगल बस पर डेरी फार्म के पास खड़ा है और यहाँ समानें उचित मूल्य पर मिलती है और यहाँ बहुत दूर-दूर से सामान लेने के लिए लोग आते हैं | यहाँ थोक विक्रेता होती है और यहाँ बहुत दूर-दूर के लोग सामान पहुंचाने के लिए आते हैं।

उ रिसेंटली कॉलेज में आया हूँ और रिसेंटली कॉलेज बहुत मस्त है और यहाँ पर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती है और बहोत बारे बड़े लोग आते हैं और यहाँ पे पढ़ाई कर के अपनी शिक्षा को ग्रहण --

अभी हम बिहार के ककोला झरना में आए और यहाँ का ककोला झरना बोहोत प्रसिद्ध झरना है यहाँ लोग बोहोत दूर-दूर से स्नान करने के लिए आते है यहाँ का सीन भी बोहोत मस्त है घुमने का नजारा भी अच्छ --

अभी हम बिहार की पटना मेमोरियल स्कूल में आए है और मेमोरियल स्कूल भी बोहोत बड़ा है और यहाँ का बच्चा भी बोहोत शिक्षित यहाँ घुमने का एक से एक अच्छा जगह है और यहाँ के बच्चे भी खेल कूद रहे है और यहाँ का एक से एक अच्छा सीन भी देखने में लग रहा है ।

अभी हम बिहार ही वाल्मीकि मेमोरियल स्कूल में है और यहाँ पर वाल्मीकि मेमोरियल स्कूल में बहुत बेहतरीन जगह और यहाँ घुमने का अच्छा जगह यहाँ पर एक दोकान भी लगी है गुमटी का।